यहाँ पे रोज बहुत सारी गाड़िया रुकती है। लोग यहाँ पे खाना खाते है। अधिकतर ट्रक के ड्राइवर लोग यहाँ पे रोज --

मैचो की टूर्नामेंट होते रहती है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रोज प्रैक्टिस करने आते हैं ।